ये एक छोटा-छोटा नदी है जिसके अगल बगल बाउंड्री बनी हुई है। जिसके ऊपर ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और पेट्रोल पंप में दो लोग काम कर रहे हैं। पेट्रोल पंप के बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ है। --

और ये डैम अभी बंद है। डैम अच्छा खासा बड़ा है।

दूल्हा के पीछे फूल का डेकोरेशन है। उसके पीछे एक ठो चेयर है।